ये देखने से पार्क का लग रहा है नीचे हरे-भरे पेड़-पौधे हैं घास हैं पीछे बड़े-बड़े पेड़ हैं जो कि काले टाइप से मुझे दिख रहे हैं और आसमानी रंग-बिरंग के बादल लग रहे है और घास निकली हुई है।

एक केफे है लाइफ केफे नाम है और बैठने के लिए बेंचस है सीढ़ी लगी हुई है एक स्कूटी है एक लड़का है और बलून से डेकोरेट किया गया हुआ है व्हाइट कलर का मारबल है लाइटिंग अच्छी है आई लव कफे लिखा हुआ है जिस पे --

ये साउथ की फेस्टिवल जैसी लग रही है और आगे दो घोड़े हैं रथ पे और रथ है बहुत बड़ा रथ है जिस पे दो लोग हैं और काफी सजावट हो रखी है काफी फूलों से बहुत सारे लोग भी हैं नीचे। अच्छा लग रहा है केला का पेड़ सब है।